कुछ चार्जर अलमारी साइडो में रखे हुए हैं।

डैम से पानी बहुत तेजी से निकल रहा है।

कुछ व्यक्तियों के मुंह पर बिरर दिखाई दे रहा है।

लाल कलर से शुक्ला गन हाऊस लिखा हुआ है।

एक हॉल बना हुआ है जिसके जमीन पर ग्रे कलर का मार्बल बिछा हुआ है।

गुरुद्वारा के ऊपर एक रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है।

जाली के अन्दर एक पत्थर से बनी हुई गुफ़ा है।

मोर घास में जा रहा है।

एक खम्बे पर बॉक्सिंग बेग टगा हुआ है।

ये कुछ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ स्टेच्यूज पर जर्सियां टंगी हुई हैं।

एक व्यक्ति गुफा के बाहर खड़ा हुआ है।

गुफा के बाहर काले काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं।